spreadsheets में charts प्रविष्ट करने पर लिबर ऑफिस calc के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
charts को बनाना संपादन करना और फॉर्मेट करना
charts का फिर से आकर बदलना और स्थानांतरण करना
यहाँ हम gnu/लिनक्स और libreoffice suite वर्ज़न 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं
अतः libreoffice calc में विभिन्न प्रदर्शन options के बारे में सीखना शुरू करते हैं
पाठकों को सूचना व्यक्त करने के लिए charts सशक्त तरीके हो सकते हैं
लिबर ऑफिस calc आपके data के लिए विभिन्न प्रकार के chart formats प्रदान करता है
calc का इस्तेमाल करके आप charts को काफी हद तक customize भी कर सकते हैं
अपनी personal finance tracker ods sheet खोलते हैं
और sheet में दर्ज सभी चीज़ों पर खर्च की गयी राशि को भरें
हम cell जो e3 से निर्दिष्ट है उस पर click करेंगे और राशि 6500 type करेंगे
अब column में नीचे जाएँगे हम e4 e5 e6 और e7 से निर्दिष्ट सेल्स में राशि 1000 625 310 और 2700 क्रमशः type करेंगे
अब sheet में दर्ज सभी चीज़ों के लिए पायी गयी राशि भरेंगे
अतः f3 से निर्दिष्ट cell पर click करें और राशि 500 type करें
अब इस column में नीचे जाएँ हम f4 75 f6 और f7 से निर्दिष्ट cells में राशि 1000 625 10 और 200 क्रमशः type करेंगे
सीखते हैं कि इस table के लिए chart कैसे बनाएँ
एक chart बनाने के लिए सबसे पहले हमें chart में सम्मिलित किये जाने वाले data को चुनना होगा
अतः cell sn पर click करें और mouse button बिना छोड़ें cursor को आखिरी cell तक drag करें जिसमें 700 है
अब मेन्यूबार में insert option पर click करें और फिर chart option पर click करें
आप देखते हैं कि data के साथ default chart worksheet में सम्मिलित हो गया है
साथ ही chart wizard dialog box प्रदर्शित होता है
chart wizard प्रदर्शित करता है कि default chart चुनित है
यह default chart chartwizard में आप के द्वारा किये गये बदलावों को दर्शाने के लिए अपडेट करता है
chart wizard dialog box में the मुख्य भाग होते हैं chart को बनाने में सम्मिलित निर्देश chart के प्रकारों का चुनाव और chart के प्रत्येक प्रकार के लिए options
3d look option को चेक करके chart प्रदर्शन को तीन डायमेंशन में भी प्रदर्शित कर सकते हैं
चलिए इन options की कोशिश करते हैं
हम choose a chart type field के अंदर bar option पर click करेंगे
ध्यान दें कि नमूना chart table के data को bar प्रारूप में प्रदर्शित करता है
उसी प्रकार से आप अन्य options जैसे pie area bubble पर click कर सकते हैं
और choose a chart type field के अंदर भी कई अन्य options पर क्लिक कर सकते हैं और अपेक्षित chart प्राप्त कर सकते हैं
steps option के अंदर हमारे पास data range named एक और option है
इस option का उपयोग करके आपको chart में जितना data प्रदर्शित करना है उसकी सीमा खुद से बदल सकते हैं
data को बनाने का default option data series in columns है
हम तरीका बदल सकते हैं data series in rows का उपयोग करने के बजाय हम data को plot करना चाहते हैं
यह लाभदायक है यदि आप अपने data को दर्शाने के लिए chart की स्टाइल जैसे कि column का इस्तेमाल करते हैं
अंततः आप चुन सकते हैं कि first row as label इस्तेमाल करना है
या first column as label
या chart के अक्ष पर labels के लिए दोनों
फिर data series in column में फिर से click करें
अब अपने नमूने chart में यदि हम शीर्षक received के अंदर का data हटाना चाहते हैं हम यह सबसे पहले data range field पर क्लिक करके कर सकते हैं
और फिर range $a $1 is to $f $7 to $a $1 is to $d $7 का सम्पादन करके कर सकते हैं
शीर्षक received के अंदर के data पर ध्यान दें यह chart में अब नहीं प्रदर्शित है
अगला देखते हैं कि data series क्या करता है
ध्यान दें यहाँ 5 rows हैं जो हमारी spreadsheet में data की सभी rows को प्रदर्शित कर रही हैं
add और remove buttons हमें chart में data जोड़ने और हटाने की अनुमति देंगे
up और down buttons का इस्तेमाल करके हम data को फिर से क्रमबद्ध भी कर सकते हैं
अतः data और उसको chart में प्रदर्शित करने के तरीके को चुनने के बाद dialog box में finish button पर click करें
आप देखते हैं कि chart spreadsheet में प्रविष्ट हो गया है
spreadsheet में charts प्रविष्ट करना सीखने के बाद
हम अब सीखेंगे कि libreoffice calc में charts format कैसे करें
format menu में formatting और
charts के दिखावट को ठीक करने के कई ऑप्शन्स होते हैं
spreadsheet में हमने जो chart प्रविष्ट किया है उसे format करें
अतः chart पर doubleclick करें जिससे कि यह स्लेटी हाशिये से बंद हो जाय
यह प्रदर्शित करता है कि यह edit mode में है
अब मुख्य menu में format option पर click करें
आप देखते हैं कि dropdown menu में कई सरे formatting options हैं जैसे format selection position and size arrangement chart wall chart area और कई सारे
यह chart के स्थापन पृष्ठभूमि और chart के शीर्षक व्यवस्थित और फ़ॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं
हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले formatting options के बारे में एकएक करके सीखेंगे
format selection option शीर्षक chart area के साथ एक dialog box खोलता है
ध्यान दें कि यहाँ पर तीन tabs हैंborders area और transparency
default रूप से borders टैब चुनित है
चार्ट के border का स्टाइल और color बदलते हैं
यह करने के लिए style field पर click करें और continuous चुनें
फिर उसी प्रकार से color field में green पर click करें
अब ok button पर click करें
ध्यान दें कि chart के border की स्टाइल और रंग तदनुसार बदलते हैं
title option chart के शीर्षक और उसके अक्षों को फ़ॉर्मेट करता है
axis option जो chart बनाती हैं उन lines को फ़ॉर्मेट करता है
साथ ही दोनों x और y अक्षों पर दिख रहे text के font को भी
इन सब options का बाद में खुद से अन्वेषण करें यह जानने के लिए कि यह सब क्या करते हैं
calc chart क्षेत्र की पृष्ठभूमि को बदलने के लिए भी option प्रदान करता है
chart क्षेत्र मुख्य शीर्षक और की सहित chart graphic के आसपास का क्षेत्र है
chart क्षेत्र को format करने के लिए format option पर click करें और chart wall चुनें
आप देखते हैं कि chart wall शीर्षक के साथ एक dialog box प्रदर्शित होता है
style field continuous दर्शाता है क्योंकि यह हमारा अंतिम चुनाव था
color field में red पर click करें
हम size को भी 020cm में बदल change
अब ok button पर click करें
आप देखते हैं कि chart क्षेत्र का स्टाइल और रंग बदलता है
आगे हम सीखेंगे कि chart में elements का आकार फिर से कैसे बदलें और स्थानांतरित कैसे करें
एक chart का आकार फिर से बदलने के लिए नमूने chart पर click करें
आप देखते हैं कि chart के किनारे हरे handles दिखते हैं
chart का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए chart के chart कोनों में एक markers पर click और drag करें
chart को स्थानांतरित करने के लिए पहले chart पर click करें
अब cursor को chart के ऊपर कहीं भी घुमाएँ
cursor हाथ में बदल जाता है
chart पर click करें और इच्छित स्थान पर ले जाएँ अब mouse का button छोड़ें
आपने chart स्थानांतरित कर लिया
अगला हम सीखेंगे कि position and size dialog box का इस्तेमाल करके charts का आकर कैसे बदलें
फिर से chart पर click करें
अब chart पर दायाँclick करें और context menu से position and size चुनें
position and size dialog प्रदर्शित होता है
इसमें कई सारे fields होते हैं जो chart के x और y स्थानों को और साथ ही लम्बाई और चौड़ाई को निर्धारित कर सकते हैं
अपने chart के लिए x निर्देशांक को 100 और y निर्देशांक को 083 निर्धारित करें
ok button पर click करें
हम देखते हैं कि chart निर्धारित values अनुसार chart क्षेत्र के अंदर ही अपना स्थापन करता है
इसी के साथ हम इस spoken tutorial के समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे: charts बनाएँ उनका सम्पादन और फ़ॉर्मेटिंग करें
हमने यह भी सीखा कि कैसे spreadsheet के अंदर charts का आकार बदलें और स्थानांतरित करें
व्यापक नियतकार्य
अपनी spreadsheet practice ods खोलें
data के लिए pie chart प्रविष्ट करें
chart का आकार बदलें और sheet के दायें कोने में स्थानांतरित करें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
spoken tutorial project team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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spoken hyphen tutorial dot org पर संपर्क करें